एक अलमारी भी दिखाई दे रही है।

और बेंचेस भी लगी है बैठने के लिए।

और यहां पर बड़े बड़े पेड़ की नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक चट्टान की गुफा बनी हुई दिख रही है।

ये नजारा बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

एक मकान बनता हुआ दिख रहा है।

यहां पर ढेर सारे बुजुर्ग व्यक्ति झुंड बना कर बैठे हुए है।

उसपे लिखा हुआ है नमिता बर्ड्स एंड ब्लॉसम नर्सरी अंदर की ओर देखियेगा तो काफी रंगीन गमले नजर आ रहे हैं।